यह पूल है यह पूल नया बना है नदी पर बना है नदी बहुत इनमे बहुत लोग काम करते हैं अच्छा और वैसे लगता---

लोहा का पूल है और चारों तरफ से पहाड़ घना लगता है | पूल में ढेर लोग काम कर रहा है | पूल में पूल बना रहा है |

ई कोचिंग पढ़े वाला रूम लौकता घर। ऐमे दुगो ब ए -- ब्लैक बोर्ड लौकता।

ऐमे खिड़की बावे केतना सारा बेंच रखाईल बा लाइका सन के पढ़े खातिर एगो हरिहर बावे।

ईसा मसीह के चर्च लौकता।

ई बा चर्च। ईसा मसीह ऐजा टंगल बानी उनके फोटो ल लागल वावे और फोटो के आजू- बाजु बोर्ड पर कुछ- कुछ लिखल बा। यिसु के प्रबधक लिखलवावे। ओईपर नाम बा--

और बाउंड्री खूब बढ़िया लोहा के। जमीन बा संगमरमर के--

एक मोर लकड़ी के चार टुकड़ों पर खड़ा है और---

और मोर के पीछे घाव लग रहा है |

इ कही सरकारी दफ्तर का लगत आहे जे बहुत सारा गाड़ी टेम्पू सब खड़ा ववे एजे फल के दुगो दुकान लगत है।

एक औरत खड़ी होकर मछली देख रही है | चार-पांच आदमी आपस में बात कर रहे हैं | निचे पूरा डब्बा सजा हुआ है |

हरे- हरे पत्ती पहाड़ पर पेड़ उगल बा। इ बहुत सोचे वाला बात बावे। भगवान ---